यह एक ढाबा दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारे चिप्स के पैकेट लटके हुए हैं और यहां पर एक नाल और मेज और कुछ कुर्सियां भी पड़ी हुई हैं।

यह एक चर्च दिखाई दे रहा है जिसके बाहर कुछ रंग बिरंगी लाइटें दिखाई दे रही है और कुछ शीशे की खिड़की भी दिखाई दे रही है।

कुछ गमले और पेड़ भी नजर आ रहे हैं यहां पर कुछ बच्चे और कुछ आदमी और औरत भी दिखाई दे रही है।

यह एक जिम दिखाई दे रही है जिसके अंदर तीन मशीन लग रही है और जंगला में को रोशनी आ रही है।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

यहां पर टेंट और कुछ फूल और दिखाई दे रहे है।

यहां पर कुछ मैट भी दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर टिन भी पड़ी हुई है।

और यहां पर दो काउंटर भी दिखाई दे रहे हैं।

जिनके ऊपर बिल्ली छपी हुई है।

ऊपर कुछ तारीख का पोस्टर भी लगा हुआ है।

यहां पर कुछ बोटल भी नजर आ रही हैं।